सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर मोटरसाइकिल और स्कूटर दिखाई दे रही है ऑटो दिखाई दे रहा है पीछे की तो दुकान दिखाई दे रही है दुकानों में सामान रखा हुआ है एक और दुकान दिखाई दे रही है जिसपर--

एक सैलून का दृश्य है यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है जिस में एक शीशा दिखाई दे रहा है शीशे के ऊपर लाइट लगी हुई है जोकि जल रही है कुर्सी दिखाई दे रही है जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक मैदान का दृश्य है यहाँ पर छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है पूरे मैदान में मिट्टी फैली हुई है हरी-हरी घास द दूर दूर तक फैली हुई है मोटे-मोटे पत्थर दिखाई दे रहे है ये मोटे-मोटे पत्थर दूर-दूर तक दिखाई दे रहे है पौधें लगे हुए है ।